इसके साइड में एक स्कूटी लगाई हुई है।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में बहुत बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है।

एक पुरुष ऊपर के ओर गेंदा रोक रहा है इसमें एक रूख है।

इसमें बहुत सारे लेडिस और बहुत सारे पुरुष भी है।

जिसमें लाल कलर का लहंगा पहना हुआ है।

इस मे सब लड़कियां उजली कलर की कपडा पहनी हुई है।

इसमें रंग बिरंग के झंडा भी लगाया हुआ है।

उसके सामने एक छोटा सा पेड़ है।

यह एक सिलाई करने वाला कारखाना है।

तीन ठो मशीन का कलर व्हाइट है।

इसके सामने एक बाइक पे एक पुरुष ख बैठे हुए हैं।

इसमें बहुत सारी उजली बल्फ जल रहा है।

इसके सामने दो बाइक लगाई हुई है।

इसके सामने ब कूट में और बोरी में बहुत सामान रखा हुआ है।

उसके पीछे बहुत सारी हरियाली भी है।

इसके साइड में एक लाल कलर का दिवाल भी है।

एक पुरुष के हाथ में बैट है।

इसमें तीन कुर्सियां है जिसका कलर ब्लैक है।

इसमें एक अलमारी है जो लकडिओ को बनाया हुआ है इसमें एक बहुत बड़ा शीशा है।

उस बिल्डिंग के छत पे ए_सी लगायी हुई है व्हाइट कलर का है।

इसमें एक गाड़ी लगाई हुई है।